यह एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे एक अंकल काउंटर में बैठे हुए है और बाकी--

और एक लाइट जलते हुए दिख रहा और कैमरा लगा हुआ है।

और ऊपर साइड में एक फैन है और एक घड़ी है और एक टी_वी लगाया गया है और ऊपर साइड में एक खिड़की दिख रहा है और बल्ब दिख रहा है।

और एक लंबा सा पेड़ मुर मु मंदिर के बगल में स्थित है।

दवा देते हुए दिख रहा है और साइड में मोहार के साइड में हरा पर्दा मारा गया है और उसके पीछे में भी एक टेबल रखा गया है।

जींस का पैंट पहना हुआ है औ सिर पे पगड़ी बांध के ब फोन से बात करते हुए दिख रहा हैं।

और एक दो तीन बाइक खड़े हुई हैं और दो तीन आदमी बाहर खड़े हुए हैं और एक आदमी--

और तीन लोग साइट कुर्सी पे बैठे हुए हैं और यह होटल में मस्त सजाया गया है और दिखने में बहुत खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है।

यह एक स्कूल है स्कूल के सामने एक बड़ा सा मैदान है मैदान में बहुत सारे लोग जो है जुटे हुए हैं और कुछ टीचर भी हैं और कु--

और यह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है सब अलग-अलग कंपनी हैं इसमें--

एक क्लास का किताब रक्खा गया है बहुत सारा और ऊप्पर लाइट जलते हुए दिख रहा है।

यह एक ढाबा है ढाबा के ऊपर पतरा रखा गया है और ऊपर साइड में पेड़ वेड़ दिख रहा हैं।

और बहुत सारा भी लगाया गया है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

ए पेड़ लगाए गए हैं और साइड साइड में बाउंड्री मारा गया है और रेलवे में इस--

यह एक किराना का बड़ा सा दुकान है यहाँ पे अंदर साइड में बहुत सारा सामान लगाए रखा हुआ है।

और ऊपर भी डब्बे में मिठाई करके रखा गया है बहुत सारा और यह देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

और नीचे साइड में पोस्टर मारा गया है और नीचे टाइल्स में साफ सफाई की गई है।

यहाँ पे एक बड़ा सा समुद्र है समुद्र के किनारे साइड में बहुत छोटे और बड़े पत्थर रखे गए हैं।

और कार ब्लैक कलर की है और एक अंकल पेंट मार रहे हैं और एक अंकल --

सर्विसिंग करते हुए दिख रहे हैं और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है एक गाड़ी का कलर और ब साइड में हरे भरे पेड़ जैसे कि दिख रहे हैं।

ये एक बड़ा सा टासफारमा है टासफारमा साइड में बहोत सारा खंबा लगा हुआ है।

और आजू बाजू में हरा भरा घास है और खंभा भी लगा हुआ है खंभा की मदद से तार पहुँचाया जा रहा है घरों घरों में--

बड़ा सा खंभा दिख रहा है खंभा के ऊपर बहोत सारा तार ओर है और दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पे एक स्टेज बनाया गया स्टेज के आजू बाजू में पर्दा मारा गया है।

और के ऊपर एक लड़की चढ़ी हुई है और आगे साइड में बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

काउंटर के ऊपर साइड में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है अभी यह--

और साइड साइड में बाम्बू लगाया गया है टिकाने के लिए और नीचे साइड में भी रख कर लगा गया है और--